एक भवन दिखाई दे रहा है उसके बाजु में एक और भवन दिखाई दे रहा है सफ़ेद कलर से पुते हुए है भवन के सामने बहोत बड़ा--

कुछ कागज़ की झालर लगी हुई दिखाई दे रही है।

एक नसेनी रखी हुई है एक बड़ा मैदान है मैदान में कुछ पेड़ लगे हुए है कुछ घास लगी हुई है।

कमरा दिखाई दे रहा है कमरे में सफ़ेद कलर के टाइल्स लगे हुए है एक लकड़ी ए लकड़ी का दरवाजा--

अ बेड बना हुआ है जिस पर अ जिस पर चढ़ने के लिए दो सीढ़िया बनी हुई है दोनों तरफ एक - एक डस्टबिन रखी हुई है।

मिट्टी दिखाई दे रही है मैदान के किनारे लोहे की जाली लगी हुई है।

फूलो की लंबी- लंबी मालाएं लटकी हुई है कुछ गुब्बारे लगे हुए है।

फूलो की रंगोली हॉल में बनी है।

और लटकी हुई है कुछ कपड़े घिरी कर के रखें हुए है।

यहाँ एक बहोत बड़ा बगीचा दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारी पीले--